और उसके साथ एक मेज रखा हुआ है मेज के साथ एक डस्टबिन रखा हुआ जो की रेड कलर का है उसके साथ एक गमला रखा हुआ।

यह एक दिव्य ज्योति जागृती संस्थान है यहां पे बहुत सी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है यहां पर ऊपर बहोत से कमरे बने हुए हैं उसके ऊपर--

यह एक बड़ा सा बंगला है इसमें बहोत से कमरे बने हुए है और ऊपर भी अह कुछ कमरे बने हुए है।

और यहाँ पर लकड़ भीं वगैरा रखी हुई हैं यहाँ पर बुजुर्ग--

रेड कलर का मैट भी बिछा हुआ है और सजा हुआ है।

उसके पास भी एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है यहां पर--

यह एक ऑफिस है ऑफिस में बहुत रखे हैं यहां पे एक प्रिंटर और लैपटॉप वगैरह भी रखे हुए हैं यहां पर एक--

एक डांस का टेबल सा लगा हुआ--

एक स्टुल भी रखा हुआ है यहां पर--

पड़ा हुआ है जिसमें की बैग है टंगा हु--

अअ यहां पर बड़ा सिल्वर का गेट लगा हुआ गेट खुला हुआ है और गेट के पीछे एक आदमी भी खड़ा हुआ है और --

यह एक गौशाला है गौशाला में बहुत सी गाय हैं जो कि बहुत से कलर की हैं कोई चिट्टे कोई भूरे और कोई काले रंग की हैं।

कलर की जाली मंगाने में लगी हुई हैं।

ने ग्रीन कलर की टी शर्ट पहनी हुई है एक ने ब्लैक कलर की और एक ने--

यह एक बड़ा सा पेट्रोल पंप और इस पेट्रोल पंप पर लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं और बड़ी सी टंकी भी खड़ा हुआ जो--

मंडी होटल के लोग हैं यहाँ पर प्याज आलू प्याज बाल व लहसुन वगैरा सबकुछ रखा हुआ है और यहाँ पर--